फेंसिंग तारस की दिखाई दे रही है ऊपर कुछ तार नज़र आ रहा है यहाँ पे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ काफी बड़े नज़र आ रहे है पीछे पहाड़ नज़र आ रहे है।

एक दिखाई दे रही है बाउंड्री दीवाल से बनायीं गयी है दीवाल काफी बड़ी दिखाई दे रही है दीवाल काफी डिज़ाइन दार दिखाई दे रही है जिसमे काफी अच्छे मे डिज़ाइन किया गया है यह पे कुछ--

पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ फूल नज़र आ रहे है निचे काफी सारी मट्टी और घास नज़र आ रही है यहाँ पे एक लड़का नज़र आ रहा है पीछे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ काफी हरे भरे दिखाई दे रहे है।

बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है यहाँ ऊपर दो तार दिखाई दे रहे है तार काफी बड़े लग रहे है यहाँ पे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे बिल्डिंग काफी बड़ी नजर आ रही है यहाँ पे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है सामने कुछ स्टॉल नजर आ रहे है यहाँ पे काफी सारी दुकाने दिखाई दे रही है यहाँ पे काफी सारी लाइटिंग नजर आ रही है यहाँ पे काफी सारी रेलिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पे कुछ स्क्रीन नज़र आ रही है यहाँ पे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है कुछ लोग बात करते नज़र आ रहे है यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे नज़र आ रहे है यहाँ पे काफी सारे कंप्यूटर दिखाई दे रहे है।

--दिखाई दे रहा मॉल काफ़ी बड़ा दिखाई रहा हैं मॉल को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया हैं मॉल की डिजाइनिग काफ़ी अच्छी की गई है यहाँ पर कुछ रैलिंग नजर आ रही--

सर पर कैप लगाया हुआ है पीछे का भी सारे पेड़- वेद नजर आ रहा है पेड काफी बड़े दिखाई दे रहे है--

यहाँ पर एक बाइक दिखाई दे रही है नदी मे एक नाँव नजर आ रही है सामने एक ब्रिज नजर आ रहा है ब्रिज काफी बड़ा दिखाई दे रहा है काफी सारे पेड़ नजर आ रहा है।